रेड कलर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पढ़ा रहे हैं।

घर बने हुए दिख रहे हैं घर के आस पास पेड़ पौधे भी है।

इस क्षेत्र में छोटे बच्चों को कुछ गैम खिलाया जा रहा है एक सर्कल है।

इ नीचे पे इसके नीचे की साइड ट्रेन का भी चित्र है।

और ट्रेन के पीछे बिल्डिंगें भी दिख रही हैं।

ये कोई इस्टेशन का पिक है जहां लोग ट्रेन का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और--

जिसमें कई सारी बाइक इस्कूटी खड़ी हुई है।

सच वगैरा इनको देख रहे हैं।

और जिन्होंने रक्तदान वगैरा किया उनको पुरस्कार भी दिया जा रहा है।